आदमी दिखाई दे रहा है | कच्चा घर भी दिखाई दे रहा है |

और एक लड़की नर्स है और एक लड़का उसने लड़की ने मास्क पहना हुआ है।

फूल लगी हुई हैं लाल सफेद कलर पीले कलर गुलाबी कलर की।

एक बड़ा-सा गार्डन दिख रहा हे उसमे सफ़ेद कलर का रोड बना हे साइडो में रेलिंग लगी है कम्बा दिख रहा हे।

सफ़ेद कलर ऑरेंज कलर से पोता हुआ है मंदिर पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

लड़का ने नीले कलर की शर्ट टी-शर्ट पहनी हुई है। वहाँ की --

एक गार्डन दिखाई दे रहा है। उसमे एक टब रखा हुआ है। एक घोड़ा दिखाई दे रहा है। एक फिसल पट्टी --

रोड दिखाई दे रहा हैमकान दिखाई दे रहे है एक जेंट्स दिखाई दे रहा है एक जिप दिखाई दे रही है।

लाइट के खंभा दिखाई दे रहे है डोरी दिखाई दे रही है टॉवर दिखाई दे रहे है।

लाइट के खम्बे दिखाई दे रहे हैं गमले दिखाई दे रहे --

अम कुर्सी कुर्सी दिखाई दे रहे हैं उसपे एक जन बै --

उसमे ओटो दिखाई दे रहे है ओटो में जेंट्स और लेडीज दिखाई दे रहे हैं । एक जेंट्स दिखाई दे रहा है हरे-भरे --

एक रोड दिखाई दे रहा है रोड के ऊपर एक टंकी दिखाई दे रही है।

और पोस्टर भी लगे हुए हैं।